यह दृश्य एक घर के सामने का नज़र आ रहा है मैदान में लड़कियां खड़ी हुई हैं जोकि पानी के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही हैं।

बनाई हुई है जो कि घास फुस से बनाई है यहाँ हरी-भारी फसल नजर आ रही है।